बतक हैं बतक पानी पी रही हैं तालाब में पानी भरा हुआ है थोड़ा सा।

वगेरा है बहुत सारी अमूल लिखा हुआ है पिज़्ज़ा वगेरा लिखा हुआ है ।

कोई बहुत बड़ा शोरूम है कपड़े-वपड़े वगेरह की दू कपड़े-वपड़े वगेरह लगे हुए हैं।

बाइक खड़ी हुई है । स्कूटी वगेरा भी खड़ी हुई है ।